इस तस्वीर में मुझे मंदिर दिखाई दे रही है जहां पर मुझे भगवान के कई अलग अलग तस्वीर दिखाई दे रही है।

स्टील का मुझे कतोरी और कप भी दिखाई दे रही है और थाली भी दिख रही है।

मुझे यहां पीछे में आदमी दिखाई दे रही है और ऊपर फ्लैग्स दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे काले रंग की प्लेट दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे पानी दिखाई दे रही है।

पीछे मुझे बहुत सारे घास और एक सफेद रंग की बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है।

मुझे यहा फ्लोर में रेड कलर के कारपेट बिछे हुए भी नजर आ रहे है।

मुझे ऊपर लाइट बल्ब दिख रही है और खिड़की में सफेद रंग की ग्रिल भी दिख रही है।

मुझे यहां पर एक लोहे से बना हुआ बाल्टिन भी दिखाई दे रही है।

यहां मुझे तेबल के ऊपर में दो कतोरी दिखाई दे रही है।

मुझे यहां हैंगर में बहुत सारे स्कर्ट लगाए हुए दिखाई दे रही हैं।

यहां पर मुझे बैठने के लिए छोटा सा कुर्सी भी दिख रहा है।

यहां पर मुझे इमोजी के पैकेट भी दिखाई दे रही है।

मुझे छोटे छोटे बास्केट के अंदर में बहुत सारे पेन रखे हुए दिख रही है।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

यहां मुझे रेड कलर की पर्दा लगी है और दरवाजे में ब्लू कलर की पर्दा लगी हुई है।

मुझे यहां पर पिंक कलर के छोटा सा कार्टन भी दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे कोछू भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे मूर्तियां दिखाई दे रही है जो पेड़ से बने हुए हैं।

यहां मुझे कलर के पैकेट और पेंसिल बॉक्स भी दिखाई दे रही है।